यह दुकान दो हजार चार से चलती आ रही है जैसा की आप देख रहे होंगे बॉर्ड पर लिखा है सीन्स दो टू थाउजेंड फोर ।

जिसे कवर किया गया है देखने से दोनों ही इमारतें काफी पुरानी नज़र आ रही है।